फूल-पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति जो कि सफेद कुर्ता पहना हुआ नजर आ रहा है।

जोकि एक गुलाबी रंग का श टीशर्ट पहना हुआ है और पीले रंग --

पीछे हम देख सकते हैं कि मंडप सजाया गया है जो कि सफ़ेद और लाल रंग का है।

सामने एक व्यक्ति जो कि बैठा हुआ नजर आ रहा है टेबल के ऊपर --

हिंदी में लिखा गया दिखाई दे रहा है और हम देख सकते हैं।

रखी है जो कि कई छोटी और बड़ी दिखाई दे रही हैं।

उसने भी बिछाकर कुछ चीजें रखी गई हैं और हम देख सक --

ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि दो फैन --

पीछे एक महिला खड़ी हुई है जो कि नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है।

यह एक रोड दिखाई दे रही है। रोड के ऊपर हम देख सकते हैं --

और खम्बे की ऊपर वायर भी नजर आ रहे हैं और हम देख सकते है कि यहाँ --

यहाँ पे हम देख सकते है कि कई सारे पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

के नीचे दो बड़े-बड़े गोल आकार के सुनहरे रंग के फत्तर दिखाई दे रहे हैं।

ये पुरुष के हाथ में हम देख सकते है कि घड़ी पहनी हुई --

यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पुरुष खड़ा हुआ है जोकि नीले रंग की पैन्ट पहना हुआ है।

पीछे हम देख सकते हैं कि एक बड़ा पहाड़ जैसा पत्थर है और हम देख सक --

एक बच्चा झूला झूलते हुए नजर आ रहा है।

सफ़ेद रंग की गाड़ी नजर आ रही है और कई सारे पेड़ दिखाई --

और हम देख सकते है की उपर एक लाइट भी नजर आ रही है और कई सारे चीजे --

ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

और हम पीछे की तरफ एक बड़ी-बड़ी इमारतें देख सकते हैं।

पुलिस ऑफिसर भी नजर आ रहा है। यहाँ पर बहोत सारी मुर्तिया रखी गई हैं।

वॉशबेसिन भी दिखाई दे रहा है जो कि सफ़ेद रंग --

यहाँ पर हम एक ट्रैक्टर देख सकते है। ट्रैक्टर के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके पीछे सजावट की गई है।

पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे घने नजर आ रहे हैं।

एक महिला जो कि सफ़ेद रंग के कपडे पहनी हुवी है वो खड़ी हुवी दिखाई दे रही है।

जो कि छोटी और बड़ी दिखाई दे रही है।